थोड़े दूर नीली लाइटिंग दिखाई दे रही है और उसपे लाइटिंग भी दिखाई दे रही है। बहोत सुंदर लग रही है।

ये यहां पे दीवार है। दीवार का कलर सफेद है और इसको एक टेबल पे रखा गया है। नीचे टाइल्स --

कुछ कार हैं। एक जीप मुझे दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो तो कुछ स्विफ्ट कार दिखाई दे रही हैं। कुछ छोटी कार मुझे दिखाई दे रही हैं।

पानी में घूम रहा है। पानी का रंग थोड़ा हल्का हरा दिखाई दे रहा है। पीछे बड़ी-बड़ी घाँस लगी हुई है जिनका रंग हरा कलर दिखाई दे रहा है मुझे।

एक आदमी बैठा हुआ है चेयर पे पीछे एक आदमी है। वो भी बाल वो भी बाल काट रहा है। ऊपर से नीचे सफेद लाइट दिख नजर आ रहा है। सफेद कलर की सीलिंग है पंख लगा हुआ है। सामने आईना लगा हुआ है। बहोत सारा सामान यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है।